यहाँ पे गाड़ियों की लाईट भी रखी हुई हैं और बहुत सारे हैंडल रखे हुए हैं यहं पे सिर्फ गाड़ियों के स्कूटी के और बाइकों के--

और यहा पे दूकान के बगल में एक और दूकान है जहा पे बहोत सारे केले लगाये गये है और केले बेचे--

और ए_टी_एम का गेट शीशे का है और अगल बगल में पेड़ पौधे दिख रहे हैं और थोड़े दूर में रोड दिख रही है।

यहाँ कबूतर बेठे हुई है और तोते भी बेठे हुए निचे खरगोश दिखरे बत्तक भी दिख रही है और आस पास--

और ऊपर से अ बहुत सारे लाइटें भी लगी हुई और यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं फर्श दिख रही हैं इस अ जोकि टाइल्स की हैं ऊपर भी लगा हुआ--

सब्जियों के भी कुछ पोधे लगाये गये है अम्म मिर्चियाई भी लगाई गिये टमाटर के भी लगाये गये है।

छोटे छोटे कनेल के फूल भी लगाए हैं सफेद फूल के और चारों तरफ से घेरा गया है बगीचे को और इसमें कुर्सी रखा हुआ है जिसके ऊपर कपड़े बंधे हुए हैं।

बहुत बडा स्टेडियम हैं यहां पे बहुत लोग यहाँ पे ग्राउंड बैठे हुए हैं और ऊपर काले बादल दिख रहे हैं रात का समय हैं।

और यहा पे बोहोत सारी लाइटे भी लगी हुई है बड़े बड़े आस पास बिल्डिंग दिखरे ग्राउंड के बाहर--

और पीछे साइड में घर वर बनरा है और आस पास बोहोत सारे पेड़ पोधे नज़र आरे है।

बादल दिख रख रहे है और जहा पर लड़का वो खड़ा है घर के अन्दर बाउंड्री के अन्दर वहाँ पर रोड है जोकी वो ई --

और नीचे और बीच में बहुत सारे रास्ते टाइप का घेरा हुआ है उसमें एरो बना हुआ है।

और उपर दिवालो पे बोहोत सारी लाइट लगे हुए है और कैमरा भी लगा हुआ है ए_सी भी लगा हुआ है रूम ने और नी --

बहुत बडा हॉस्पिटल हैं जो की रोड के किनारे हैं और बाहर से इसका फोटो दिख रहा हैं जो की बहुत ही बडा हैं ।

और हॉस्पिटल का जो गेट है गो गेट के पास बाइक खड़े है बोहोत सारे --

और यहा पे आस पास बोहोत बड़े बड़े पेड़ नज़र आरे और अगल बगल में हॉस्पिटल के घर दिख रहे बोहोत बड़े बड़े--

और अन्दर बोहोत ही बड़े बड़े मशीन रखे हुए और बोहोत सारी लाइटे भी लगी हुई है शाम का टाइम है।

और इस फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर दिया गया है और अगल बगल में बहुत बड़े बड़े घर दिख रहे हैं।

सामने बहुत भीड़ लगी हुई है बीच में एक छोटी सी मंदिर है जहां पे बहुत लोग खड़े हैं मंदिर पे और फूलों से बहुत सारा सजाया गया है मालों--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

आ इन मंदिरों पे पीछे बहोत सारे भक्त है जो की भीड़ लगाए हुए है दर्शन करने के लिए और कुछ लोग फोटो खींच रहे है अपने फोन में अगल बगल में घर दिख रहे हैं।

और यहाँ पे गेट खुली हुई है और अन्दर बोहोत सारे सामान भी बेचे जा रहे है दूकान के --

और पीछे तिन लड़के है दो बच्चे है और एक लड़का है जो अपने हाथो में धुँआ करने वाला पाइप लिया हुआ है।

दुकान है जहां पर बहुत सारी बुक बेचें जा रहे हैं और सामने टेबल है टेबल पर बहुत सारी अलग अलग डायरी रखी हुई है रेड कलर की और भगवान जी की फोटो भी उसमें रखी हुई है।

और अंदर बहुत सारे सामान है और एक टेबल है और एक कुर्सी नजर आ रही है और यहां पे बच्चों के लिए बुक्स हैं और खिलौने भी थोड़े बहुत रखे हुए हैं।

और पैन है पेंसिल है बोहोत सारे अगल अगल तरह के कॉपीस है।

दुकान हैं सामने और सामने बहुत बडा नीम का पेड हैं और सटा हुआ हैं उसे जे दुकान के अंदर हैं वहां पे।

वहा टेबल है छोटे छोटे बेचे जाते है और बगल में एक घर है।

बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जिसमें कुछ फैमिली वाले आए हैं यहां पर डिनर करने बहुत सारे डाइनिंग टेबल रखे हुए हैं और टेबलों के किनारे कुर्सियां रखी हुई हैं।

और टेबलो पे टिसू पपेर मिनीयु और बोहोत सारे केचप बोतल सब कुछ रखा हुआ है।

बहुत बडा ग्राउंड हैं और ग्राउंड में बछिया बैठी हुई हैं और यहाँ पे कुछ गेम हो रहा हैं और कुछ बच्चियां खेल रही हैं।

सामने बोहोत बड़ा कॉलेज है और कॉलेज के अगल बगल में बोहोत बड़े बड़े पेड़ है।

अ दूसरे साइड एक पोस्टर लगी हुई हैं औड एक बोर्ड लगा हुआ हैं जहाँ पे मतलब बटन हैं लाइट वाइट के--